लिबरे ऑफिस draw में import and export images पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप draw पेज में images को import करना और अनेक फाइल formats में draw फाइल को सेव करना सीखेंगे
हम draw में vector और बिटमैप या raster images दोनों को import और export कर सकते हैं
यहाँ हम ubuntu लिनक्स version 1004 और लिबरे ऑफिस suite version 334 उपयोग कर रहे हैं
अब routemap file खोलते हैं
इस tutorial के उद्देश्य के लिए watercycle drawing की jpeg file पहले ही desktop पर बनाई और सेव की गयी है
अब अपनी draw file में इस image को import करते हैं
अब इस image को बंद करते हैं
पहले उस पेज को चुनें जहाँ आप picture import करना चाहते हैं
अब एक नया पेज प्रविष्ट करते हैं और इसे चुनते हैं
vector या बिटमैप images को import करने के लिए insert टैब पर click करें और picture चुनें
फिर from file पर click करें
insert picture dialog box दिखता है
अब water cycle jpeg चुनते हैं
यदि हम open पर click करते हैं तो image वास्तविक रूप से हमारी draw फाइल में सन्निहित होगी
यदि यहाँ हम link box पर टिक करते हैं तो image path से link हो जाएगी
अब open पर click करते हैं
एक message आता है जो दिखा रहा है कि image केवल link की तरह संचित की जाएगी
keep link पर click करें
picture draw file में link की तरह प्रविष्ट होती है
links आसानी से भी हटाये जा सकते हैं
main menu पर जाएँ edit चुनें और फिर link पर click करें
edit links dialog box दिखता है
यह dialog box draw file में सारे links को सूचीबद्ध करता है
watercycle picture के लिए link पर click करें
break link पर click करें
draw पुष्टि के लिए एक message दिखायेगा yes पर click करें
link the गया है अब close button पर click करें
लेकिन आप देखेंगे कि picture अभी भी फाइल में उपस्थित है
जब आप एक link तोड़ते हैं तो picture स्वतः ही draw file में सन्निहित हो जाती है
अब इस picture को मिटाते हैं picture चुनें और delete button पर क्लिक करें
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
दो draw files बनाएं
एक file में image प्रविष्ट करें और इसे सेव करें
एक अन्य file में image सन्निहित करें और इसे सेव करें
दोनों file के sizes की तुलना करें
file में जिसमें आपने image को linked किया है image के size को बदलें
जाँचें यदि बदलाव मूल file में दिखते हैं
आगे अब watercycle diagram को draw image की तरह इस file में सीधे import करते हैं
main menu से insert पर click करें और file चुनें
insert file dialog box खुलता है
सूची से draw file watercycle odg चुनें
open पर click करें
insert slides/objects dialog box दिखता है
file path के आगे plus साइन पर click करें
आप slides की एक सूची देखेंगे
अब watercycle diagram के साथ पहली slide चुनें
आप उस पेज को या object को भी link की तरह प्रविष्ट कर सकते हैं
यह करने के लिए केवल link check box पर click करें
ok पर click करें
सत्यापन के लिए dialog box दिखता है यह पूछते हुए कि क्या objects नए format के लिए fit होने चाहिए
yes पर click करें
नए पेज पर file में slide प्रविष्ट होती है
आगे हम draw से images को export करना सीखेंगे
draw में file exporting करने का मतलब है
उदाहरणस्वरूप draw file को pdf html jpeg या बिटमैप file में बदला जा सकता है
file formats pdf flash और html हमेशा पूर्ण draw file को export करते हैं
अब routemap file को minimize करते हैं
क्या आपको यह आश्चर्य होता है कि हमने draw watercycle diagram को jpeg format में कैसे बदला
अब मैं आपको दिखाती how की यह कैसे हुआ था
watercycle file खोलते हैं
फिर pages panel से watercycle diagram के साथ pages चुनें
main menu से file पर click करें और export चुनें
export dialog box दिखता है
filename क्षेत्र में watercyclediagram name प्रविष्ट करें
places panel से desktop को browse करें और चुनें
file type क्षेत्र में हम jpeg विकल्प चुनेंगे लेकिन आप अपनी इच्छानुसार किसी भी format में draw file को सेव कर सकते हैं
selection check box पर टिक करें
save पर click करें
jpeg options डायलॉग बॉक्स दिखता है
अब इस dialog box में चुने गए default विकल्पों को रखते हैं
ok पर click करें
desktop पर watercycle diagram के साथ draw पेज jpeg की तरह सेव होता है
यहाँ draw file से केवल एक ही पेज jpeg file में बदला गया है
अगर आप pdf flash या html formats में सेव करना चाहते हैं तो draw पेज में सारे पेज exported किये जायेंगे
हम draw में raster images भी edit कर सकते हैं
raster images format menu प्रयोग करके formatted की जा सकती हैं
आप picture toolbar प्रयोग करके इन picture को edit कर सकते हैं
यह हमें libreoffice draw के इस tutorial के अंत में लाता है
इस tutorial में आपने images को import और export करना और भिन्न file formats में draw objects को सेव करना सीखा
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
चयनित objects को अलगअलग या समूह में भी exported किया जा सकता है
watercycle draw file के केवल बादलों और पहाड़ों को jpeg format में बदलें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
spoken tutorial project team
spoken tutorials प्रयोग करके कार्यशालाएं चलाती है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें